ये एक ऐ_टी_एम है ऐ_टी_एम के अंदर में बहुत सारे लड़के खड़े हैं यहाँ पे एक ऐ_सी लगा हुआ है सामने नीले रंग की दीवाल है और ऊपर शटर खुला हुआ है सामने एक कांच का गेट बना हुआ है।

इसके पीछे में एक बड़ी सी बिल्डिंग हैं सामने रेत की उम-रोड हैं ग्राउंड हैं छोटी घास लगी हुई हैं कच्चा रोड हैं सामने में--

सामने बाइक मे दो लोग बैठे है एक साइकल पे लड़का बैठा है बहुत सारी यहां पे गाड़ी खड़ी है सामने मे कुर्सी लगी हुई है नीले कलर के टायर लगे हैं।